देख सकते हैं ये योगा क्लास है। ये देख सकते हैं आप लोग ये दोनों पैर जमीन में चिपका चुके ये तीन लेडीज है।

--देख सकते है ये गिटारटाइप का है जिसको बजाया जाता है और इसमें काला और उजला कलर का कुछ बटन वटन दिया हुआ है और साइड में देख सकते है बॉटल वॉटल भी रखा हुआ है।

ये आदमी साइकल के पास खड़ा हैं जो की फल वल कुछ बांध रहा हैं और उधर क्लॉथस वगैरा बहुत अच्छे लगे रहे हैं उधर घर वर भी हैं जो की इधर देख सकते हैं यहाँ पेड़ वेर भी लगा हुआ हैं।

और ये शेर ये जू का लग रहा फोटो जो की ये उधर किधर देख रहे है और ये बहुत ही खतरनाक जानवर है।

आप लोग देख सकते है जैसा की ये लोग दोस्त है शायद ये पोज मारा रहा हैं एक लड़का इसके साथ ये लड़का फोटो खिच रहा है उधर साइड में भी आदमी सब खड़े है।

और वहाँ देख सकते है येल्लो का यह टोपी उठी हुई है जो कि यह पिंक कलर का टी शर्ट बिशर्ट भी पहना हुआ है देख सकते है लोवर बोबर भी पहना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर